सब लोग खड़े हैं। दो और एक पिक्चर है।

चेयर पर वो बैठी हुई है।

और काफ़ी ज्यादा ब्रांडेड दिख --

प्लास्टर लोग किए हुए हैं। ये मोजा भी --

यह एक डैम है जो सुखा हुआ है यहां --.

खड़े है इसके आगे एक --